लड़के की फोटो है जो की एक शर्ट प्रेस कर रहा है।

और इसके पीछे एक आदमी एक औरत खड़े हैं।

और एक्ससाईझ कर रहे है। यहाँ डंबल रनिंग सायकलिंग इन्स्ट्रुमेंट पडे है।

यहां पर वेज नॉन वेज खाना मिलता है ऊपर फर्राटा लगा है दो तीन टेबल लगे हैं।

यहां पर पैनकार्ड फोटो आधार कार्ड --

यहां पर बहोत से लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं।

पेड़ पौधे लगे हैं नीचे बहुत सुंदर सुंदर--

पुजा भोजनालय लिखा गया है बाहर बहोत बड़ी सड़क बनी है।

बहुत सारी बुक्स पेन पेंसिल रबड़ शार्पनर पड़ी हैं।